यहाँ सामने एक फ्लैट है फ्लैट के सामने दूर-दूर तक आसपास पूरी गाड़िया ही गाड़िया दिखाई दे रही है और ये एक पार्किंग लॉज है ।

जो चदरा है वो उखड चूका है अंदर की मशीन ने दिखाई दे रही है गाड़ी के टायर टेढ़े हो चुके है हेडलाइट टूट चुकी है सामने की सामने की कांच भी लगभग--

ये एक पार्क है पार्क के बीच में फाउंटेन है जो अभी नहीं चलाया गया है स ए फाउंटेन के साइड साइड में --